जनरल स्टोर है और यहाँ पे बहुत सारी समाने मिलती हैं ।

यहाँ पे लोग आते है सामानों को खरीदने के लिए और यहाँ पे --

और यहाँ पे बोहोत भीड़ होती है। बोहोत दूर-दूर से लोग आते है। यहाँ पे यूनियन बैंक के खाते दारी लोग --

सारी मूर्तियाँ है जिसकी लोग पूजा करते हैं अच्छे तरीके से।